इसमें आपको एक बिल्डिंग दिख रही है नीचे बहुत सारी जालियाँ दिख रही है।

गाड़ियाँ खड़ी हैं कार खड़ी हैं बाइके खड़ी हैं।

पानी में झरने बह रहे है।

समे आपको एक आश्रम दिख रहा है।

जो एक मंगलम पार्टी हॉल है।

ये एक बड़ी सी हैमलिस की बोर्ड दिख रही है।

इसमें आपको एक टॉप एंड टाउन दिख रहा है टॉप एंड टाउन में सामान रखा हुआ है।

इसमें आपको एक बैंक की बिल्डिंग दिख रही है ये बहुत ही बड़ी बनी हुई है।

बड़ा घने-घने पेड़ दिख रहे हैं।

खम्बे दिख रहे हैं।

रंग बिरंगा दिख रहा है।

बहुत सारी मछलियां रखी हुई है।

जहां पर बहोत सी लोग बैठे हुए हैं।

दरवाजे के साइड में लकड़ी के डंडे खड़े हुए हैं।

ये एक विद्यालय जैसा दिख रहा है।